थ्री हंड्रेड फिफ्टी ऑफ़ बाय टु गेट सेवन हंड्रेड फिफ्टी ऑफ़ --

और यहाँ पे हमें कुछ फूल भी --

फ्रूट्स दुकान हम देख सकते है इस दुकान का नाम है हैल्थ अड्डा--

इस मस्जिद के आसपास हम कुछ दुकान पाठ देख पा रहे है।

कुछ बोर्ड और पोस्टर देख पा रहे है एक बाइक भी हम यहाँ पे देख सकते है इसके अलावा यहाँ पे हम बहुत सारे पेड़ - पौधे देख पा रहे है कुछ इलेक्ट्रिक पोल एंड तार भी हम यहाँ पे देख सकते है।

बहुत सुंदर से सजाया गया है ।